दिखाई दे रहा है जिसके आस पास तीन शैड नजर आ रहा है।

सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे आधे मे घास तो आधे मे पथ्थर दिखाई दे रहे है सामने एक नदी बनी हुई है उसके ऊपर एक हाइवै बना हुआ हैं।

हाइवै के ऊपर एक टीन सेट जैसा एक और हाइवै बना हुआ है सामने एक ट्रक भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और आसमान भी खुला हैं।

सामने एक हाल सा दिखाई दे रहा है जो की बाना छवाई का है।

सामने एक स्टेज दिखाई दे रहा है जिसमे दरी बिछी हुई रखी है बहुत सारी कुरसिया रखी है जिसमे--

ने एक नदी दिखाई दे रही है जिसके आस पास पत्थर की बॉउन्ड्री दिखाई दे रही है साथ ही पत्थर की बॉउन्ड्री के--

सामने एक नदी दिखाई दे रही है जिसके बीच मे एक बॉउन्ड्री बनी हुई दिखाई दे रही है जिस बॉउन्ड्री का कलर सफेद और लाल दिखाई दे रहा है आस पास एक पत्थरों की चट्टान दिखाई दे रही है।

सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसके बीच में नदी के बीच में से एक बाउंड्री बनाई गयी है पास की बाउंड्री है पत्थरो की बनाई गयी है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।